एक एक हाय भीड़ भाड़ वाली एक जगह है जहाँ पे किनारे-किनारे होटल मंदिर किराना दुकान बहोत सारे फल दुकान है।

ये शहर की फ़ोटो है जहाँ पे रोड पे एक बड़ी- सी बस खड़ी हुई है जी इतना भीड़- भाड़ है कि बस के रोका हुआ है पुलिस भी खड़ा हुआ है शायद कुछ कारणवश खड़े किए है और एक --